इस इमेज में हमें ये मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में घाँस दिखाई दे रही है और फूल लगे हुए भी दिख रहे हैं जो --

इसी इमेज में हमें पानी भरा हुआ दिख रहा है पानी में एक नाव दिख रही है नाव पे कुछ लोग दिख रहे हैं और नाव की छत का कलर हरा है।